वहां तो लाल रंग का छोटा छोटा बिल्डिंग जैसी चौ कमरा दिखा रही है और एक बड़ा पौधा भी--

इधर एक रोड है यहाँ तो एक दूर से एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ तो गाड़िया भी ज्यादा दिखा रही है एक व्हाईट कलर का गाड़ी है और--

हाँ स्पेक्ट्स है अहह ओ गॉगल्स है और तरहा तरहा की गॉगल्स दिखा रही है ये तो ये लड़की व्हाईट शर्ट पहना --

ये तो एक ऑफिस रूम है ये तो ज्यादा बढ़िया है दूर से दिखा रही है ये तो कुछ --

अं कैबिन जैसी कुछ है।

और पीछे दीवार व्हाइट कलर का ज्यादा बढ़िया है और एक काला रंग का ग्लास भी दिख रही है यहां तो दो बेड्स और टेबल्स भी दिख रही है।

ये तो कुछ गाड़ी ज्यादा गाड़ियां दिखा रही है।

ये तो एक रेस्टोरेंट जैसी है यहां तो लाल रंग का कटिंग ज्यादा रिका दिखा दिखा रही है।

और वहा दीवार पे भी डिजाइन भी व वही कलर का है और एक टेबल है टेबल के पास कुर्सी भी है।

फ्रूट्स दिखा रही हैं यहाँ तक केला भी हैं और ऑरेंजस भी हैं और संतरा भी दिखा रही हैं।

एक फालुन से यहाँ एक बक-बाल्टी दी है पानी से और एक टिंडी है--

यहाँ तो नाम अः अध्विन इंग्लिश न इंग्लिश में अध्विन लिखा हुआ है।

दी वार आपर ऊपर नीचे सब कुछ दीवार लाइट ब्लू कलर का दिखा रही है डार्क ब्लू शेड डिजाइन दिखा रही है।

ये तो एक फंक्शन की महोल जैसी है यहाँ तो कलरफुल कलरफुल बिल्डिंग्स है--

एंट्रेंस का दरवाजा भी हैं और उधर कुछ लाइट सी दिखा रही है।

खरीद ते है दुकान पे जाके ये तो किरणे जैसी स्टोर जनरल स्टोर जैसी है।

इधर एक फंक्शन हॉल है यहां तो कुछ फंक्शन चल रहा है।

और यहाँ तो स्टूल्स हैं बैठने के लिए दुकान में तरह तरह की मॉडल का टॉप्स दिखा रहीं हैं और पीछे और कुछ कपड़ा हैं।

कलर फुल दिखाई री है रेड कलर का ग्रीन कलर का ब्लू कलर का वाइट कलर का भी --

यहाँ एक आदमी खड़ा होक फोटो खींच रही है उसका तो शर्ट ब्लैक कलर का है और--

तरह तरह की लाइटस् दिखा रही है यहाँ ब्लू कलर का बोर्ड भी दिखा रही है।

और वहां कुछ केमिकल का समान है और दीवार पे एक आदमी का--

ये तो एक आयल फै आयल म म दुकान जैसी हैं यहाँ तो तरह तरह की डिब्बियाँ बॉक्सेस हैं।

और अ अ संध्या टाईम है ना सूरज डूबा हुआ दिखा रहा है यहाँ तो पेड़ भी ज्यादा है पौधा भी है छोटा छोटा--